जावा में स्विच केस के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि जावा में स्विच केस कंस्ट्रक्ट का प्रयोग कैसे करते हैं
इस ट्यूटोरियल के लिए हम प्रयोग करेंगे उबुंटू व 1110 जेडीके 16 और इक्लिप्स 370 इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको जावा में इफ एल्से स्टेटमेंट को प्रयोग करने का ज्ञान होना चाहिए
यदि ऐसा नहीं है तो उचित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी निम्न वेबसाईट पर जाएँ
httpspoken tuitorialorg एक वैरिएबल की वैल्यू पर आधारित प्रक्रिया का प्रदर्शन करने के लिए एक स्विच केस का प्रयोग किया जाता है
यहाँ स्विच केस स्टेटमेंट के लिए सिंटैक्स दिया गया है
अब इसे प्रयोग करते हैं
मेरे पास पहले ही इक्लिप्स खुला हुआ है
मैंने स्विचकेसडेमो नामक एक क्लास बना लिया है
अब कुछ वैरिएबल शामिल करते हैं
मेन मेथड के अन्दर हम इंट प्रकार का एक वैरिएबल डे निर्मित करेंगे
अतः मेन मेथड के अन्दर टाइप करें इंट डे और हम इसे 3 के बराबर वैल्यू दे सकते हैं सेमीकॉलन अब स्ट्रिंग प्रकार का एक वैरिएबल डीनेम बनाते हैं
स्ट्रिंग डीनेम हम इसे शून्य से शुरू कर सकते हैं
यहाँ डीनेम एक वैरिएबल है जिसमें एक सप्ताह के दिनों के नाम शामिल हैं
डे डे नम्बर को स्टोर करता है
अब हम स्विच केस स्टेटमेंट टाइप करेंगे
अतः अगली लाइन में टाइप करें
स्विच ब्रैकेट्स के अन्दर dayदिनफिर कर्ली ब्रैकेट्स खोलें एंटर दबाएँ
यह स्टेटमेंट परिभाषित करता है कि केसेस के लिए किस वैरिएबल पर विचार किया जाना है
अगली लाइन में टाइप करें
केस 0 कोलोन अगली लाइन में डीनेम इक्वल टो डबल कोट्स में सुंदय सेमीकॉलन
फिर अगली लाइन में टाइप करें ब्रेक यह स्टेटमेंट बताता है कि यदि डे दिन 0 है तो डीनेम को सुंदय रविवार सेट किया जाना चाहिए
नोट करें कि एक ब्रेक स्टेटमेंट को प्रत्येक केस के अंत में प्रयोग किया जाना चाहिए
ब्रेक स्टेटमेंट के बिना switch केस एक जटिल तरीके से कार्य करता है
इसे ट्यूटोरियल के उत्तरवर्ती भाग में परिभाषित किया जाएगा
उसी प्रकार शेष केसेस को टाइप करते हैं
अगली लाइन में टाइप करें केस 1 कोलोन अगली लाइन में डीनामीक्वल टो डबल कोट्स में मंडे सेमीकॉलन
अगली लाइन में टाइप करें ब्रेक फिर टाइप करें केस 2 कोलोन अगली लाइन में डीनेम इक्वल टो ट्यूसडे फिर सेमीकोलन
अगली लाइन में टाइप करें ब्रेक फिर अगली लाइन में केस 3 कोलोन अगली लाइन में टाइप करें डीनेम इक्वल टो डबल कोट्स में वेडनेसडे फिर सेमीकॉलन
अगली लाइन में टाइप करें ब्रेक फिरcase 4कोलोन अगली लाइन में डीनामीक्वल टो डबल कोट्स में थर्सडे फिर सेमीकॉलन 000332 000323 फिर ब्रेक फिर अगली लाइन में टाइप करें केस 5 कोलोन डीनेम इक्वल टो डबल कोट्स में फ्रिडे फिर सेमीकॉलन
फिर ब्रेक फिर केस 6 कोलोन अगली लाइन में टाइप करें डीनामीक्वल टो डबल कोट्स में सतुर्दय फिर सेमीकॉलन
फिर टाइप करें ब्रेक सेमीकॉलन फिर ब्रैकेट बंद करें
अब एक प्रिंट स्टेटमेंट जोड़ते हैं और क्रियान्वित कोड को देखते हैं
अतः अगली लाइन में टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स में डीनेम फिर सेमीकॉलन लगायें
अब फ़ाइल को सेव और रन करें
अब Ctrl एस और Ctrl फ़11 कीज़ दबाएँ
हमें आउटपुट में wednesdayबुधवार प्राप्त होता है जो केस 3 से संबंधित है
अब डे दिन की वैल्यू को बदलते हैं और परिणाम देखते हैं
अतः 3 को बदलकर 0 करें
अब फ़ाइल को सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं कि आउटपुट सुंदय रविवार प्राप्त होता है जो केस 0 से संबंधित है
अब क्या होगा यदि वैल्यू से संबंधित कोई केस न हो
अतः अब देखते हैं कि डे दिन को बदलकर 1 करें फ़ाइल को सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं कि कोई आउटपुट प्राप्त नहीं होता है
किन्तु यह बेहतर होगा यदि हमारे पास अन्य सभी वैल्यूज के लिए एक केस हो
यह डिफॉल्ट कीवर्ड का प्रयोग करके किया गया है
अतः अंतिम केस के बाद टाइप करें डिफॉल्ट कोलोन अगली लाइन में डीनेम इक्वल टो डबल कोट्स में व्रोंग चोइस फिर सेमीकॉलन लगायें
अगली लाइन में ब्रेक सेमीकोलन हम केस डिफॉल्ट नहीं कह सकते ध्यान दें कि हम साधारणतया कीवर्ड डिफॉल्ट का प्रयोग करते हैं
अब कोड को रन करते हैं
अतः फ़ाइल को सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं डिफॉल्ट केस को निष्पादित किया गया है और अपेक्षित संदेश व्रोंग चोइस प्रिंट हुआ है
अन्य रैंडम वैल्यू लेकर देखते हैं
1 को बदलकर 15 करें
जैसा कि हम देख सकते हैं पुनः डिफॉल्ट केस निष्पादित हो जाता है
अब देखते हैं कि क्या होता है यदि हम ब्रेक स्टेटमेंट को हटाते हैं
अतः डे 15 को बदलकर डे 4 करते हैं
डे 4 के लिए संबंधित ब्रेक स्टेटमेंट हटायें अब सेव और रन करें यद्यपि केस 4 हैं फिर भी हमें आउटपुट में Fridayशुक्रवार प्राप्त होता है और Thursdayगुरूवार प्राप्त नहीं होता है
ऐसा उस तरीके के कारण होता है जिसमें स्विच केस कार्य करता है
सर्वप्रथम डे की वैल्यू की 0 से तुलना की जाती है
फिर 1 से उसके बाद 2 से और उसी प्रकार सभी संभावित केसेज के साथ तुलना की जाती है
जब एक मिलान प्राप्त होता है तो यह उसके बाद पूरे केस से मिलान को निष्पादित करता है
हमारे केस में यह केस 4 के बाद केस 5 को निष्पादित करता है
फिर यह केस 5 में ब्रेक स्टेटमेंट के कारण रुक जाता है
इससे बचने के लिए हमें प्रत्येक केस में ब्रेक स्टेटमेंट जोड़ने की आवश्यकता होती है
अब ब्रेक स्टेटमेंट जोड़ते हैं जिसे हमने हटा दिया है
अतः टाइप करें breakसेमीकॉलन लगायें अब कोड को रन करते हैं
जैसा कि हम देख सकते हैं अब केवल केस 4 को निष्पादित किया जाता है
एक नियम के रूप में प्रत्येक स्थिति में त्रुटियों से बचने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग करना याद रखें
हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर पहुँच गए हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने स्विच केस कंस्ट्रक्ट का उपयोग करना और ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग करने के तरीके के बारे में सीखा
एक नियत कार्य के रूप में एक प्रोग्राम लिखें जिसका एक वैरिएबल के रूप में एक नाम और लिंग है एक स्विच केस स्टेटमेंट के रूप में प्रयोग करें जो पुरुषों के लिए हेलो एमआर और महिलाओं के लिए हेलो एमएस प्रिंट करता है
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए निम्नलिखित लिंक पर पर उपलब्ध वीडियो देखें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
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है
मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूूँ
धन्यवाद